ये कार की शॉप इसमें है इसमें कार वगैराह के पूरा सामान मिलता है जिसमें छोटे ले से लेकर बड़े तक का गाड़ियों वाले सामान मिलता हैं।

इसमें हर एक प्रकार का चप्पल देखने को मिलेगा इसमें डिजाइन --

जंगल में बड़े बड़े पेड़ है बड़े बड़े पत्थर है जिसमें लोग खेती करके अपना पेट पालन करते हैं।

ऊपर के मकानों को पलस्तर किया जाता है ये पलस्तर होने के बाद हमारा मकान पूरा कंप्लीट हो कर हमारे हाथों में आ जाता है।

ये आइसक्रीम की दुकान है इसमें अलग अलग फ्लेवरों के आइसक्रीम मिलते हैं इसको खाने के लिए बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोग जा सकते हैं।

ये टी शर्ट वाले कपड़ों की दुकान है इसमें लड़कों से लेकर लड़कियां भी ये टी शर्ट ले सकती है।

एक समुदाय का मंदिर है जिसमें लोग अपने इच्छा और अपने मन शांति के लिए जाते हैं।

ये पक्का सड़क है जिसमें लोग--

ये एक रूम है रूम के अंदर ये सब लोग योगा क्लास योग का ट्रेनिंग कर रहे हैं।

ये अपने सिलेबस का पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ उनकी टीचर भी उन लोग को पढ़ाई में मदद कर रही है।

छोटे मोटे गाड़ियां पेट्रोल डलवानी आती हैं जो दिन से रात तक ये पेट्रोल पंप चलती रहती है।

ये गमले की दुकान है इसमें अनेके प्रकार के छोटे से लेकर बड़े तक की गमले हैं मिल जाएंगी ये नर्सरी है छोटा सा।

ए_टी_एम कार्ड से ई ए यहाँ बस ए_टी_एम कार्ड से पैसे निकला जाता है।

और छोटे से लेकर बड़ों तक का पूरा सभी सभी लोगों का सामान यहां मिलता है।

सोफा बिचाकर उसमें बैठते हैं जो बाहर से कोई मेहमान आते हैं उसको इसमें बैठाया जाता हैं।

जिसमें एक भईया ग्राहकों को सामान दिखाते हमें दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सुंदर है नाइट का वक्त है।

हमें नजर आ रहे हैं इसके अगल बगल बड़े बड़े बिल्डिंग घर दिखाई दे रहे हैं।

घर से लेकर पूरा बाहर तक अकेले से लेकर अकेले जो रहते है वो भी --

अपने बच्चों के लिए सामान लेने है यहां क्रिकेट का सामान भी मिलता--